कुछ लोग खड़े हुए हैं सब लोगो ने लाल रंग के कुर्ते पेहेने हुए है।

कुछ व्यक्ति बस की छत अ के ऊपर अ बैठे हुए हैं और एक व्यक्ति बस पर चढ़ रहा है।

उस लड़के ने लाल कलर की शर्ट और उह नीले कलर की पेंट पहनी है उसने अपने सर पर एक टोपी लगाई है और थोड़ी ही दूर पर एक बड़ा सा पेड़ है।